खिड़की के बाहर भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं एक रेड कलर की डस्टबिन नजर आ रही है।

बीच वाले घर के छत पे एक नीले रंग का टंकी नजर--

यहां पे फ्रिज भी नजर आ रहा--

सामने लिखा हुआ है एम_एस विनाय इलेक्ट्रॉनिक ।

सुंदर तरीके से बनाया गया है।

बहुत सारी लाइटें लगाई गई हैं किस्म किस्म की।

एक लड़की एक आंटी बैठी हुई हैं।

पीछे टाइल्स से कवर किया गया है बहोत सारे पंखे नजर आ रहे हैं एक झूमर नजर आ रहा हैं।

बाहर में बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं छोटे छोटे फूल के पेड़ नजर आ रहे हैं।

दो पुरुष छत पे मौजूद है जो कि यहां से कुछ काम कर रहे हैं।